ये एक मंदिर की फोटो है काफी बड़ी है और बहुत सारे लोगो की भीड़ यहाँ पर इक्कठा हुई हुई है लोग एक तरफ से जा रहे है और दूसरी तरफ से निकल रहे है एंट्री हो रही गेट लेफ्ट और राइट साइड में है।